यह बिल्डिंग में बहुत सारे आदमी रहते हैं।

यह रिक्शा काफी काफी दूर तक चल गया है।

यह बस स्टेशन में बस लगी है यहाँ पर बहुत सारे बस लगी हुई हैं ।